कहीं रेस्टोरेंट वगैरा में सभी एक जगह बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षु है जो एक टेबल पे बैठे हुए है।

मंदिर है वहाँ पर कुछ महिला और कुछ पुरुष बैठे हुए है कुछ पंडित जी और बाबा जी है जो कुछ बोल रहे है सब सुन रहे है।

''जो लग रहा है की कमर्शियल बिल्डिंग के जैसा चाहे एयरपोर्ट हो बस स्टैन्ड हो ''''--''''''

बड़ा सा एक बर्तन है जिसमें ऐसा पता चला की दूध है और दूध से निकालने वाला मशीन प्रतीत हो रहा है फ्रीज़र है बगल पास में ही लगा हुआ गोल राउंड का एक और चक्का है।

पुराना सा मंदिर या फिर गुफा-गुफा का वह क्षेत्र है। जिसमें तीन-चार सीढ़ियां पांच सीढ़ियां है और एक-दो --